और ऊपर छत पर सफेद कलर का रंग है फर्श का रंग चॉकलेटी कलर का है और एसि लगा हुआ है लाइट जल रही है सामने से एक गेट खुला है जिसमे से रोशनी आ रही है।

एक गाड़ी रखी हुई है जो लाल कलर की है पर टंगी हुई है खम्बे ऑरेंज कलर के है कुछ टीले लगी हुई है।

खिड़कियां आधी खुली हुई है पर टंगी हुई है एक खंबा लगा हुआ है उसपे तार हुए एक पेड़ की टहनियाँ दिखाई--

एक स्लेटी कलर का गेट लगा हुआ है और समाने एक रेलिंग सी लगी हुई है फर्श पर एक लाइट जल रही है जो कि मूर्ति पर उजाला कर रही।

एक बोर्ड लगा हुआ है जो नीले कलर का है और उसके नीचे कुछ प्रोडक्टो के फोटो लगे हुए.

कुछ एक लड़का एक औ एक औरत वहां से आ रही है कुछ फूलों वाले पेड़ भी लगे है कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी ल--

कलर लाइटिंग हो रही है दीवारों का रंग सफेद कलर का है।